और इन्होंने अलग-अलग रंग के कपड़े पहने हुए हैं सामने की तरफ आ पा --

यहाँ पर जमीन दिख रही है जिसमें घास उगी हुई है कुछ मिट्टी दिख रही है और एक यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है टेक्टर खड़ा हुआ है बोरियां रखी हुई है।

यहाँ पर गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है ऊपर की तरफ टीन का शेड लगा हुआ है आगे की तरफ हरे रंग का दान पात्र बना हुआ है जिस पर लिखा हुआ है दान पात्र।

यहाँ पर ग्रुप नीचे की तरफ फर्श है जिसमें टाइल्स लगी हुई है सफेद-काले रंग की कुर्सियां है सफेद काली यहाँ पर मेज लगी हुई है अन्य --

लाइट लग ऊपर की तरफ लाइट लगी हुई है पीछे की तरफ एक बैनर लगा हुआ है एक व्य एक व्यक्ति कुर्सी रखी हुई है।